उसमें लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और ये पानी घासों पे डल रहा है पानी का--

और उसमें कई सारे लोग हमें बैठे हुए नजर आ रहे हैं कुर्सियां टेबल लगे हुए जाली दिखाई दे रहे हैं।